ये एक सुंदर सी सड़क है और इस सड़क में सड़क के उल्टी और सीधी --

यह एक नाइ की दुकान है और उसे दुकान में बहुत सारे ग्राहक है।

उस सामान मे से कुछ तेल के पिपे भी नजर आ रहे हैं। जिसमे एक लड़का भी खड़ा हुआ है जो कि उसके रुमाल बंधा हुआ है और वह शायद सेल्फी लेने की कोशिश --

और उस मंडी में से भी है सेब भी है और उसे मंडी में अनार भी है और फलों के नीचे अखबार बिछे हुए है ताकि फल गंदे ना हो। इ --